गार्डन है और यहां पर कोई न दिखाई देने के कारण--

इस तस्वीर के आगे एक दरवाजा लगा हुआ है।

जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं।

बगल में झाड़ियां है और यहां पर जाली लगी हुई है।

इसपे एक सफेद रंग की मूर्ती बैठी हुई है।